बड़े पेड़े भी है छोटे पेड़ें का कलर हरा है बड़े पेलों की पत्तिया झड़ चूकी सीमेंट रोड है।

यहा कुछ बोर्ड दिख रहे है एक बोर्ड पर बरसा लिखा हुआ है एक पर आकाश लिखा है एक बिल्डिंग दिख रही है।

कुछ औरते खड़ी हुई दिख रही है उस हॉस्पिटल की दीवाल का कलर सफ़ेद है और नीला है।

यह एक तालाब है तलब की फिगर पर कुछ कुरसिया लगी हुई है आदमों को बैठने के लिए लेकिन अभी कोई आदमी नहीं बैठा।

और ग्राउंड के चारों तरफ बाउंड्री है बाउंड्री ओं के पीछे की तरफ पेड़ लगे हुए है बड़े बड़े।

कुछ बोतलों में कुछ सामान दिख रहा है। उसकी किचन की दीवार का कलर पीला है।